और थोड़ा बहुत कुहासा भी लगा हुआ है।

यहाँ एक मॉल है यहाँ बच्चे के स्वेटर स्वेटर मिलते हैं मफलर मिलते हैं साड़ी --

उम बैग भी मिलते हैं सूट-सलवार भी मिल --

यहां एक कॉलेज है शासकीय स्नातक कातर महाविद्यालय जगदंबपुर | यहां बाइक बहुत सारा लगे हुए हैं जहां बाहर में स्टूडेंट लोग दो चार खड़े हुए हैं।

मीनार भी है चारमीनार भी है एक टंकी पानी टंकी भी है।